सरक है। यह सरक पर बोहोत सारे गाड़िया आती-जाती है यह सरक पर बोहोत सारे बस भी लगी है यहाँ पर ट्रक भी है। यह-यह सरक के चारो और बोहोत छोटे बड़े --

दूकान है यह दुकान काफी बड़ी है यह मछली की दुकान में बहुत सारे दुकानदार भी आए हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे गरहाकियां मछली खरीदने के लिए आए हैं यहाँ पर बहुत सारे भीर लगी हुई हैं ।

माँ दुर्गे कि मंदिर है यहाँ पर माँ दुर्गे कि काफी ऊंची मंदिल है यह मंदिल बहुत ही सुन्दर दिख दिखाई दे रहे हैं यह मंदिल के ऊपर --